इसमें घास दिख रही है आदमी दिख रहे हैं पेड़ पौधे दिख रहे हैं पानी की टंकी दिख रही है।

दिख रहा है रोड दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है।

है आसमान दिख रहा है।

इसमें आदमी दिख रहे है। पौधे दिख रहे है। झंडा दिख रहा है। आसमान दिख रहा है।

इसमें गमला दिख रहे हैं साइकिल दिख रही है।

इसमें आदमी दिख रही है स्कूटी दिख रही है पेड़ पौधे --